शैलपुत्री महात्मा बुद्ध लीन हैं।

इसमें जो है स्ट्रीट बने हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है।

खड़ी नजर आ रहे हैं एक ऑटो और भी नजर आ रहे हैं फ्रंट पर लाल टाइप का --

जो लिखे हुए है जो अस्पष्ट रूप से देखाई नहीं दे रहा।

इस साइड में वाइट टाइप का--

पत्थर का पूरा देखाई दे रहा है कि--

बहुत दूरी पर दिखाई दे रहे हैं और दूरी पर एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हड़े हैं।

उसके आगे गेट बना नजर आ रहा है उसके अन्दर दिखाई दे रहा है।

पूरा में जाली टाइप का नजर आ रहा है वो पीला नजर आ रहा है कुछ लोग खड़ी नजर आ रहे हैं।

चौड़ी टेप का कालीन है इसपे दो लोग खड़े नजर आ रहे--